पीछे बोर्ड लगा हुआ है जोकि नीले कलर का है। फर्श यहां की भूरी है।

और इन धपलियों में यहां पर अ लाल कलर की पट्टियां लगी हुई हैं। यह एक मेज पे रखी हुई है जोकि बैगनी कलर की हैं और सफेद कलर की हैं।

जमीन की फर्श भूरी है।

ऑरेंज हरे फूल लगे हुए हैं यहाँ कई खंबे खड़े हुए हैं।

जिस पे यहाँ पर सफेद कलर से ऐसे पेंट किया गया है और लाल कलर से ब्लू कलर की इसकी पट्टी बनी हुई है।

सामने एक टंकी रखी हुई है छोटे छोटे घर बने हुए हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक रेड क्लेफ चीफ शोरूम है।

रेड क्लिफ रेड बोर्ड में लिखा हुआ है और यहाँ पर पटरे पड़े हुए हैं जमीन में जोकि भूरे रंग के हैं।

यहाँ भगवान की मूर्तियां रखी हुई जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी --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

फर्श इसके सफ़ेद काले कलर की है और यहाँ पर --

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह बहोत सुंदर घर दिख रहा है जोकि हरे और सफेद कलर से इसे पेंट किया गया है।

और यहां पर तीन आदमी खड़े हुए और एक चाय बनाने वाला --

और यहाँ पर एक भी खड़ी हुई है और आसमान सफ़ेद और नीला है।

जैसा कि मैं यहां देख पा रही हूँ यहां पर कुछ मिस्त्री काम कर रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां बोहोत सारे मछलियां पड़ी हुई है कटी हुई।

मछली का कटना भी पड़ा हुआ है और बोरी परी हुई है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहां पर मछली --

जैसा कि मैं यह देख पा रही हूं यह एक दुकान है। यहां पर काले कलर की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।